लाइट बॉक्स लंबा वाला भी नजर आ रहा है इस तस्वीर में हमें।

मैदान में बहुत सारा इंसान लोग योगा करके नजर आ रहा है।

लाइट बहुत जलती हुई दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में हमें।

सामने में एक इंसान भी दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में हमें।

इस तस्वीर में हमें एक रूम दिखाई दे रहा है।

घर का बाहर में इंसान भी दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में हमें।

बाइसिकल लोग भी बहुत सारा दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में हमें।

इस पिक्चर में हमें एक डेम दिखाई दे रहा है।

सामने में ब्रिज भी दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में हमें बहुत सारा पानी दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में हमें।

सामने में बहुत सारा इंसान लोग दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में हमें एक मछली मार्केट दिखाई दे रहा है।

घर का अन्दर में बहुत सारा सामान दिखाई दे रहा हैं।

टेबुल में बहुत सारा सामान रखा दिखाई दे रहा हैं घर का अन्दर में।

आसमान में व्हाइट बादल भी नजर आ रहा है इस पिक्चर में हमें।

आमने में एक इंसान भी दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में हमें।

दरवाजा का सामने मे पट्टा भी दिखाई दे रहा है।

सामने में लाइट बस जलते हुए भी बहोत सारा दिखाई दे रहा है।

घर में खिड़की और दरवाजा पर्दा भी दिखाई दे रहा है।

आसमान में वाइट कलर का बादल भी नजर आ रहा है।

स्विमिंग पूल का सामने में बहोत सारा पेड़ पौधा फूल दिखाई दे रहा है।

गंदा फेंकने वाला भी दिखाई दे रहा हैं ग्रीन और ब्लू कलर का।

इस तस्वीर में हमें इलेक्ट्रिक पोल्स भी दिखाई दे रहा है।

सामने में जंगल और पहाड़ भी दिखाई दे रहा है।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

बड़ा वाला छतरी जैसा भी दिखाई दे रहा है रेड और व्हाइट कलर में।

मे कुछ लिखकर भी नजर आ रहा है सामने में बैटरी भी दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में हमें।

टमाटर में दागी दिखाई दे रहा है।

ऊपर में लाइट बस जलती हुई भी दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में हमें।

सामने में वाइट कलर का बोट भी दिखाई दे रहा है बराना--

घर का वॉल में वाइट कलर दिखाई दे रहा है पोस्टर लुक दिखाई दे रहे है इस तस्वीर में हमे।